जो कि लोग यहां खड़े हैं और बातें कर रहे हैं।

और इस पुल पे अ बहोत सारी महिलाएं--

और यहां पे बाहर बहोत सारे अ जूट के बोरे हैं जिसमें अ अं सब्जियों और कुछ आलू--

और एक बड़ा सा कोड़े का यहां अह--